नमस्कार अरैज़सारणियोंके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
अरैज़ प्रयोगकर्ता को डेटा के एक से अधिक हिस्से को वेरिएबल के अन्दर रखने की अनुमति देता है
उदाहरणस्वरूप वेरिएबल days को एक अरैarrayकह सकते हैं
कोष्ठकों की एक जोड़ी के भीतर हम एक से अधिक मान रखने जा रहे हैं
अतः मैं इसके लिए 5 मानों को चुनूँगा और सप्ताह का हर दिन इनमें से प्रत्येक के भीतर होगा
मेरे पास monday सोमवार tuesday मंगलवार wednesday बुधवार thursdayगुरूवार और friday शुक्रवार केवल सप्ताह के 5 दिन होंगे जो हमें सेव करता है
उदाहरणस्वरूप मानिए कि पहला दिन सोमवार है दूसरा दिन मंगलवार है और इसी तरह
आशा है कि आपको समझ में आया होगा
एक वेरिएबल को इसके अंदर डेटा के एक से अधिक मानों का प्रयोग करने के लिए यह बहुत सरल और अधिक प्रभावशाली तरीका है
कृपया ध्यान दें यह संख्याएँ भी हो सकती हैं या कोई भी डेटा जिसे आपने उनके अंदर रखना आवश्यक समझा
अब अपनी अरैarrayको सामने लाने के लिए मैं कहने जा रहा हूँ echo days
अबआप पाते हैं कि यह काम नहीं करता है
यह होता है जब हम अपना पेज खोलते हैं
हमारे सामने केवल array एको हुआ है
अब array कहीं भी यहाँ भीतर नहीं है
अतःphp ने क्या किया हमारे सामने तथ्य लाया कि हमारे पास एक अरैarray है
अबएक अरैarray के भीतर एक विशिष्ट एलीमेंट को लाने के लिए आप चाहें तो इसे एलीमेंट कह सकते हैं कुछ स्थानों पर वे इसे id tags या एक अरैarrayके एलीमेंट्स कहते हैं
हम वर्गाकार कोष्ठकों का उपयोग करने जा रहे हैं और हम अरैarrayके भीतर एलीमेंट के स्थान को कहेंगे
अतः आप इसे एक दो तीन चार पाँच सोच सकते हैं
हालाँकि संख्यांकन प्रणाली की वजह से मानक संख्यांकन प्रणाली की शुरुआत हम शून्य एक दो तीन चार से कर रहे हैं
अतः उदाहरणस्वरूप मैं सोमवार को सामने लाना चाहता हूँ जो कि शून्य होगाअतः यहाँ पर आप शून्य रखिये और आपके सामने सोमवार आ गया
उसी प्रकार से एक मंगलवार होगा और चार जो कि अरैarrayमें अंतिम एलीमेंट हैशुक्रवार होगा
ठीक है अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे विभिन्न तरीकों से अरैarrayमें मानों को निर्धारित करते हैं
अब जो मैं बताना चाहता हूँ वो मुझे प्रारंभ से शुरू करने दीजिये
मैं एक अरैarrayबनाने जा रहा हूँलेकिन मैं इसे विशेष रूप से बनाने जा रहा हूँ
अतः days zero equals mondayशून्य दिन सोमवार के बराबर है days one equals tuesday एक दिन मंगलवार के बराबर है
अब हो सकता है आप सोचें इसका क्या महत्व है मेरा मतलब मैं वास्तव में यहाँ क्या कर रहा हूँ कि मैंने पहले जो बोला था उसे बनाने में थोड़ी परेशानी होगी
मेरा मतलब है कि मैं कह सकता हूँ day 1 equals आप जानते हैं और day 2 equals और आप इसे इसी प्रकार से कर सकते हैं
फिर भी हम यहाँ अभी भी जो कर रहे हैं उसे एक अरैarrayके अन्दर रख रहे हैं
अतः हो सकता है कि इसके पास अभी भी वही संरचना हो लेकिन हम इसे अलग तरीके से निर्धारित कर रहे हैं
अतः आप इसे इस प्रकार से कर सकते हैं मुझे इसे हटाना है मैं हमेशा यह इस तरह से करना पसंद करता हूँ
मैं यह अधिक सरल लगता है और बस आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसे नीचे इस तरह से ला सकते हैं
फिर भी यदि आप इसे देखने के लिए वरीयता देते हैं मेरा मतलब यदि मैं माफ़ कीजिये मैं इसे फिर से करूँगा
यदि मैं इसे अभी सेव करता हूँ रिफ्रेश करें कुछ भी नहीं बदला
यहाँ पर कोई गलती नहीं है हमें अभी भी वही संरचना मिली है हमने इसे केवल लाइनों पर नीचे उतार दिया है
वहाँ पर आपके फंक्शन के अंत में लाइन समापक और न कि हर एक लाइन के अंत में अतः इससे भ्रमित न हों
ठीक है तो चलिए अब इस पर वापस जाते हैं
ठीक है तो यह बेसिक अरैarray है और दो अलग तरीकों से इसके लिए कैसे मानों को बनायें और कैसे इसके लिए मानों को कहें
अतः उदाहरणस्वरूप यदि मैं कह रहा था echo today is oops माफ किजिए days और फिर मैं कह सकता हूँ शून्य
अब आप पहले ही देख सकते हैं कि मैंने इसे विषय में चिन्हांकित किया है मैंने इसे हरे रंग से चिन्हांकित किया है
अब यदि आप इसे रिफ्रेश करें आप देखेंगे कि यह सोमवार है
अब आप भ्रमित न होंमैं आपको विषय के उपयोग की सलाह देता हूँ
फिर भीयह मानक तरीका नहीं है कि कोन्टक्ट कोडिंग को पहचाने
इसे जो दिखने में बेहतर बनाएगा आप उसे देखेंगे जब हम इसे यहाँ नीचे लिखेंगे हम कह सकते हैं echo days और zero आप देख सकते हैं कि कैसे एक पूर्णांक एक संख्या को दर्शाने के लिए वह लाल रंग में है
जिस तरह से यह आप लिखना चाहते हैं वह उस तरह है और हम देख सकते हैं कि यह सही है
परन्तु आप इसे सामने लाने के लिए अपनी स्ट्रिंग में एक अरैarray सम्मिलित कर सकते हैं
फिर भी मैं associative अरैज़arrays पर जा रहा हूँ जहाँ हम एक तरह से id tags नियुक्त करने जा रहे हैं जहाँ हम हर एक के लिए एक मान रख सकते हैं मैं पहचान के प्रत्येक प्रकार के लिए उस मान का कैसे विवरण कर सकता हूँ
यदि आप इसका पालन नहीं करते तो यह तरीका है मैं इसे बनाने जा रहा हूँ
मैं कहने जा रहा हूँ ages equals अरैarray अब भीतर मैं कहने जा रहा हूँ alex
अब बजाय आगे बढ़ने के और कहना billy और फिर kyle जो तीन नाम मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ मैं बोलने जा रहा हूँ उन्नीसचौदह और अट्ठारह
मूलरूप से equals बराबर और greater than सेअधिक चिह्न> का इस्तेमाल कर रहे हैं
अब यह क्या किया है कि हमारे अरैarray एलीमेंट्स के बजाय जैसे यह शून्य से बुलाया जा रहा है यह एक से बुलाया जा रहा है यह दो से बुलाया जा रहा है
यह अब alex कहा जाता है यह billy कहा जाता है और यह kyle कहा जाता है किन्तु इनके मान चौदह उन्नीस और अट्ठारह हैं
अतः वास्तव में यह उसी का तरह लिखने के ही समान होगा चलिए इसे हटाते हैं और इसे शून्यएक और दो कहते हैं
और इसे थोडा अधिक उपयोगी और याद रखने के लिए थोड़ा सरल कहने के लिए थोड़ा सरल बनाने के लिए अब हम कह सकते हैं echo out ages alex इस तरह
अतःयह हमारे सामने उन्नीस देगा जैसे ही हमने रिफ्रेश किया और यहाँ देखिये उन्नीस बिलकुल यही होगा यदि आप इस को billy और kyle के साथ करें
तो जब आप प्रोग्राम के आधे रास्ते में हैं और बजाय कहने के कि ओह ! मुझे फिर से सबसे ऊपर जाना होगा और प्रत्येक पंक्ति से गिनूँ और बोलूँ क्या यह शून्य एक दो या तीन हैमैं याद नहीं कर सकता
यह करने में काफी सरल है इसे करने का दूसरा उपयोगी तरीका है यदि मुझे कहना होता कि array one is equal to alex अरैarray एक alex के बराबर है और two is equal to billy दो billy के बराबर है
हम शून्य में और फिर एक से शुरू नहीं कर रहे हैं हम एक और दो से शुरू कर रहे हैं ताकि इसे याद रखने में आसानी हो
अतः अब हम कह सकते हैं echo ages one जो alex के रूप में सामने आता है
हम इसके लिए शून्य नहीं इस्तेमाल कर रहे हैंयह काफी उपयोगी है प्रोग्राम करने के लिए नाकि शून्य एक दो कहने के लिए
इस पर कोशिश कीजिए इस पर काम कीजिए जानिये आपके लिए सबसे सरल क्या है
किन्तु मेरे ख्याल से यह पूर्ण व्यर्थ है क्योंकि मैं शून्य एक दो का प्रयोग करना चाह रहा हूँ
लेकिन अगर आप इसे ऐसे इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे मैंने पहले किया है या इस तरह से या किसी भी डाटा प्रकार को एक स्ट्रिंग मान निर्धारित करके फिर इसे करने का यह तरीका है
ठीक है यह बुनियादी अरैजarraysहै मेरे पास बहुआयामी अरैजarrays पर दूसरा ट्यूटोरियल है
यह एक अलग ट्यूटोरियल है कृपया इसको देखें
इस ट्यूटोरियल में बस इतना ही है मैं रवि कुमार आईआईटी बॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद